आने जाने का रास्ता और मनी प्लांट जैसे कुछ पौधे लगे हुए हैं और एलोवेरा जैसे कुछ पौधे भी लगे हुए है।

और जो ये नाम लिखा हुआ है रेड कलर के अक्षरो में लिखा हुआ है दो--

ये यूनियन बैंक की पिक्चर है जिसके ऊपर एक ये साइन बना हुआ है जो उपर रेड कलर --